यहाँ पर कई सारे बच्चे हैं जो पौधे लगा रहे हैं यहाँ सीढ़ियाँ नजर आ रही हैं सीढ़ियाँ पे दो पौधे पानी का जग रखा हुआ यहाँ पर।

हॉस्टल नजर आ रही है विंडो न विंडो नजर आ रही है।

गले में मंगल सूत्र है वह हाथ में चूड़ियाँ पहनी हुई है नीचे रेड कार्पेट नजर आ रहा है वो डांस कर रही है।

फैन नज़र आ रहा है स्वीट नजर आ रही है चेयर नजर आ रहे हैं यहाँ।

यहाँ पर अब लिखा हुआ है।

यहाँ पर पलंग नज़र आ रहा है ऊपर चढ़ने का रास्ता नज़र आ रहा है लाइट लगी है बहुत सारा यहाँ पे --

यहां पे कई सारे बकरियां नजर आ रहे हैं व्हाईट ब्लैक ब्राउन गोल्डन

वो उसके खाना खा रही है और टप है टप के अंदर उसका खाना डाला हुआ है पानी है।

यहां पे पीछे जंगल नजर आ रहा है बड़े-बड़े दरख्त नजर आ रहे हैं नारे के दरख्त नजर आ --

भी नजर आ रही है यहाँ पर कुछ चिट्स भी लिखा हुआ नजर आ रहा है यहाँ भी नजर आ रही है।

ये ऑरेंज व्हाईट ग्रीन से डेकोरेट किया हुआ है।

यहाँ पर ऊपर लाइट नजर आ रही है फैन नजर आ ।

टेबल के ऊपर पानी की बॉटल है चेयर नजर आ रहे हैं कंप्यूटर नजर आ रहा है यहां--

लोगों की बस नजर आ रही है वाइट अंड --

बनाए रखने के लिए के लिए योगदान दे का प्रयोग करें लिखा हुआ है बैनर है।

लेस के टिशू लिखा हुआ है ऐसे नजर आ रहा है प्लेट के अंदर चम्मच--

और एक मस्जिद नज़र आ रही है बड़ा सा कालक लगा गेट नजर आ रहा है मस्जिद --

यहां पे मुर्गियों का फोम नजर आ रहा है यहां मुर्गियों को एक दायरे में रखा हुआ है ऊपर लाइट नजर आ रही हैं।

यहाँ पर एक बच्ची खेल रही है हवा में लुक्का छुपी--